लेडीज का दोनो प्रकार के कपड़ा मिलता यहा--

साइड से ए_सी लगा हुआ है।

वो अच्छी अच्छी क़्वाल्टी में अ यहां पे चाऊमीन खाता है।

स्कॉर्पियो भी नया है जो कि दो व्यक्ति है सफाई कर रहा है।

जो कि चल रहा है उसका फेस नहीं दिख रहा है।

पंख लगा हुआ है लाइट भी लगा--

लोग जाते देखने इसमें पैसा वैसा लगा के लोग देखने जाते हैं।

बहुत आदमी भी खड़े हैं।

यह मंदिर है इसमें से बहुत सारी सजावट है चारों साइड से सजावट है जोकि --

बहुत सारा झंडा भी लगा हुआ है देखने को काफी अच्छे लग रहे हैं।

यह एक मोबाइल शॉप है इसमें सिर्फ मोबाइल बिक्रि होता है।

यहां पे फुटबॉल भी खेलते हैं।

खेलते हैं रनिंग भी करते हैं।

एक सैलून है इसमें सिर्फ बहुत सारी सजावट है इसमें से बोहोत पैसा --

टी-शर्ट पहने हुए हैं ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैं।

देखिए यह एक बहुत बड़ा तालाब है।

चार चार पांच पांच छह छह बाइक भी खड़े हैं।

मैन का स्टीकर लगा हुआ है सैमसंग लिखा हुआ भी है।

देखिए यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के साइड में दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

बैंच भी रखा हुआ हैं बहुत सारा नल भी लगा हुआ हैं।

को माला पहनाई गई है बहु सारी मूर्ति को माला पहनाई गई है।

यह एक संस्थान है जहां पे बहुत सारे लोग भी है।

एक दरवाजा भी है उसके सीढ़ी भी है। उसके --

एक घर है घर काफी सुंदर लग रहे हैं बहुत सारा कलर किया हुआ हैं।